बहुत सारे गाड़ी भी दिखाई दे रहे हैं।

दृश्य में छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे है।

दीवार का कलर व्हाइट है।

इस दृश्य में लाइट भी दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और सारे लोग अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं।

बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे हैं और बिल्डिंग के दीवार का कलर ह फीका हरा कलर का है।

और उनका दीवार का कलर वाइट कलर का है।

पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

दृश्य में खाने का समान भी दिखाई दे रहा है।

सारे लोग अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं।

इस दृश्य में बहुत सारे वस्तु दिखाई दे रहे हैं और सारे वस्तु अलग अलग है।

इस दृश्य में एक दीवार भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में बहुत सारे कुर्सी और टेबुल दिखाई दे रहे हैं और सारे कुर्सी और टेबुल का कलर एक ही कलर का है।

सारे कार का कलर अलग अलग है।

हर एक कार का कंपनी अलग अलग है।

इस दृश्य में बहुत सारे प्लेट भी दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है।

इसमें में दो बच्चों की हाथ में मोमबत्ती भी जल रहा है।